और पीछे गैस की मशीनें रखी हुई हैं।

इंजन के ऊपर काफी सारा कबाड़ पड़ा हुआ है।

के पीछे एक लड़का खड़ा है जो सिर पे हाथ बाँधे और नीचे सामान पड़ा है जिम का।

यह एक गेराज है और इसमें ऑटो है और दो आदमी खड़े हैं।

यह एक बहोत अच्छी मस्जिद है।

यह गाड़ियों की मोटर की दुकान है।